उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है उस पर सफेद अक्षरों में लिखा हुआ है तेजा बुक स्ट--

यहाँ एक टेम्पो है जिस परररररररर एक आदमी अंदर की ओर बैठा हुआ एक ने पेर रख रखा है एक पेर जमीन पर रख रखा है उसने गले मैं सफ़ेद कलर के दस्ते पेहन रखे---

इसके आगे एक इस्टोर है जिस पर कुछ मेगज़ीन पड़ी हुई है और एक लड़के का फोटो बना हुआ है और सौफे पर एक बेग रखा है जो काले कलर का दिख रहा है उसके ऊपर लाइट जल रही है जो लाल कलर की दिख रही है। पंखा--

एहें दो लोग है जो पानी मे है और एक आधा पानी मे है और आधा खड़ा हुआ है पानी हरा नीला कलर का पीला कलर का दिखाई दे रहा है।

और उसके ऊपर एक पोस्टर लगा है उसपे स्टेट बैंक ए_टी_एम लिखा हुआ है एक आदमी है जिसने एक कंधे पर झोला टांगा।

उसने स्लीपर और रेड कलर की दस्ती पहन रखी ई है एक आदमी है इसने दोनों हाथ कमर पर रख रखा है उसने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है।

उसने नीले या हरी कलर की शर्ट पहन रखी हैं नीचे जुते पहने रखे है जो काले कलर के दिख रहे है। एक आदम-- ]